इस फोटो के अंदर हमें एक छोटा सा --

यह फोटो एक अवसर के एक मस्जिद नहीं हिंदू मंदिर की ली गयी है ।

इस फोटो के अंदर हमें एक तरफ़ नजर आ रहा है।